ये एक दुकान का फोटू है और इसमें--

और कुछ कपड़े बाहर की और टांगे हुए हैं एक यहां पर बोर्ड लगाया हुआ --

एक बड़ा लोहे का गेट लगाया हुआ है।

सामने कुछ ऑटो रिक्शॉ खड़ी हुई है और एक व्यक्ति स्कूटी पर बैठा हुआ है उधर--

और एक ग्लास मे कुछ नालिद्दा डाल के ज्यूस रखा हुआ है पीछे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है कुर्सियों पर --

इसमें ग्रीन रेड कलर का कार्पेट लगाया हुआ है इसमें डेकोरेशन में फूल और लाइटें लगा के सजाया हुआ है।

श्रृंगार किया हुआ है वो आलती पालथी मार कर बैठे हुए हैं और पीछे की ओर एक दीवार बन्नी हुई है।

ये कुछ पर्दे लगा रखे हैं खिड़कियों में एक यहां पर पंखा लगाया हुआ है।

बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर कांच के डिस्प्ले में कुछ कपड़े रखे हुए हैं।